ये एक जिम है। यहाँ पर लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं।

यहाँ पे अपने मसल्स बनाने के लिए आते हैं दो लड़के यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं।

उसका बछड़ा भी साथ मे बँधा हुआ है।

यहाँ पर लोग जिम करने के लिए आते है और अपनी बॉडी भी बनाते है

जो की यहाँ से लोग मिठाई खरीद के ले जाते हैं अपने घर और मिठाई का मज़ा लेते हैं।